यहाँ पर कुछ लोग हैं जिसमें एक ऑफिसर से मिलने आए हैं जिसमें दो महिला हैं और एक जेंट्स हैं जो की चेयर पे बैठे हुए हैं और एक --

एक महिला जो दूसरी तरफ से बैठी हुई है यहां पर यह ऑफिसर अपने सामने कंप्यूटर स्क्रीन खोला हुआ है उसके टेबल पर एक रिसीवर है और कुछ कागज --

जो क्राफ्टिंग का काम कर रहें हैं उनके आगे में बहुत सारे पेपर हैं जो की अलग-अलग रंगों के हैं सामने में बड़ा सा खिड़की है जिसमें ग्रिल लगा है और रोशनी आ रही है और नि --

एक साड़ी पहनी हुई है इन लोगो के सर पे कोई लम्बा-लम्बा बड़ा सा चीज ताज के जैसे पहनी हुई है यहाँ पर पेड़ है जो हरे रंग के --

यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है एक दो तीन महिलाएं तो मास्क भी लगाए हुई है और यहाँ पर एक इंसान भी है उसने व्हाइट कलर का शर्ट पहना है।

यहाँ पर कुछ बच्चे है जो बहुत प्यारे से और छोटे से है और ये सब डांस का स्टेप सिख रहे है। इनमे एक मैडम है और एक टीचर है।

पेन्सिल है पेन है कैची है और बहुत प्यारे बच्चे है दीवार जो है रेड कलर का है उस पे बड़ी सी खिड़की है जिसमे ग्रील लगा हुआ है जिस से रोशनी आ रही है और ये बहुत प्यारी लग रही है बच्चिया --